इस तस्वीर में बहुत ही विशाल नदी गिरती हुई नीचे पहाड़ो से नज़र आ रही है जो कि देखने में बहुत ही विशाल है।

के आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है ये मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है एक साइड देखते हुए नज़र आ रहा है इसकी आँखे देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में नदी निकलती हुई पत्थरों से पहाड़ों से निकलती हुई नजर आ रही है।

तस तस्वीर मे सब्जी मंडी को दिखाया गया है यहाँ पे बहोत सारी तरह तरह की सब्जियां रखी हुई है।